बस पे जा जय माँ कुंडेश्वरी लिखा हुआ है बस आधी सफ़ेद है आधी ग्रीन कलर की है।

ईमारत है उसे काफी तरह अच्छी तरह सजाया गया डेकोरेशन किया गया है तरह-तरह की लाइटो --

सी नदी दिखाई दे रहीं है आजू - बाजू हरे - भरे खेत दिखाई दे रहे है ऊपर से देखने --

वे एन्जॉय कर रहें हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं चेयर रेड कलर की है बीच में पेड़ एक है ।

इस पिक्चर में चट्टानें दिखाई दे रहीं है चट्टानें की बीच से सीढियाँ जा रहीं है ।